ऐसा दिख रहा कुछ लाइटिंग्स भी दिख रही है साइड में भी है।

तीन कार खड़ी हुई है और तीन कारों के गेट में एक गेट में कार के गेट में रिबन जेसा दिख रहा है रेड कलर का।

और डोर दिख रहे हैं जिसमें लाइट भी दिख रही है नीचे स्विच बोर्ड भी है साइड में।

मुझे साइड में तीन स्कूल कैंपस जैसा लग रहा है तीन बस खड़ी है येलो कलर में और उसका जो जो जाली है स्कूल का--

ये कुछ पर्पल कलर और जो ब्लू कलर का इसका बॉर्डर है जाली का ऐसा कुछ गेट है इसका बहुत बड़ा--

रेलवे स्टेशन जैसा लग रहा है जो वाइट कलर का शेड है वाइट और ब्लू कलर का शेड है।

पीछे कुछ ग्रीन कलर का छोटे-छोटे पेड़-पौधे इस टाइप में लग रहा है ऐसा लग रहा है खेत में दिख रहा है मुझे तो।

एकदम बड़े डार्क ग्रीन कलर के और नीचे छोटे-छोटे--